ये एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे ल हैं।

यह चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये काट लकड़ी की बनी हुई है कुर्सी।

जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है।

यह कुर्सी को बहुत ही अच्छी तरीकों से डिजाइन किया गया है।

यह होटल जैसा लग रहा है।

पोस्टर भी लगा हुआ है न्यू इंट्रोडक्शन का समान लिखा हुआ है।

यह एक स्टेशन है।

यह एक सैलून जैसा है।

ये पानी मे ही मिलते हैं।

इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि एक हॉस्पिटल जैसा है।

और उसके हाथ में एक थैला और कागज दिखाई सा दे रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसको बहुत अच्छे तरीको से सजाया गया है।

पीछे एक ढाबा भी जैसा लग रहा है और इस यहां को घेर दिया गया है।

जिसके लिए पता चलता है कि यहां पे उत्सव समारोह के लिए आप बातचीत कर सकते हैं ले सकते हैं रेंट पे भाड़ा --

आगे एक बाइक भी हैं ब्रिज के बीच में घर भी है और--

एक आगे में छोटी छोटी मछलियां पीछे बहुत बड़ी मछलियां बेचीं जा रही है।

बहोत सारे व्यक्ति सब यहां लेने को आते हैं।

ऐसा इस चित्र में लग रहा है कि इस काम को थोड़े दिन के लिए रोका गया है ।

जैसे फोन वगैरह ब्लूटूथ वगैरह सारा चीज यहां पे मिलने की दिखाई दे रहा है।

यह गैरेज जैसा लग रहा है।

जो एक कार टूटी है रखी हुई है जिन्हें बनने के लिए रखा गया है।

इसे एलबस्टर के द्वारा घेरा गया है इस दुकान को।

रोड पे दो व्यक्ति जा रहे हैं और रोड पर टेंपो भी है।

इस चित्र में यह दर्शाया गया कि यहां पर बहोत सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं और दो महिलाएं भी है।

इस चित्र से यह पता चलता है कि यहां छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है।

उपर में सारा चीज पता चल रहा है सारा पोस्टर लगा हुआ है।

टीचर उन्हें कुछ समझाए जा रहे हैं जो सारे बच्चे उन्हें समझ रहे हैं।